सामने सफेद कलर की ए_सी लगी हुई है।

दोनों साइड दीवार के ऊपर व्हाइट कलर किया हुआ है।

इसमें अलग अलग अलमीरा बारियां बनी हुई है उसके अंदर अलग अलग तरह के सामान रखे हुए है।

और मालायें डाली हुई है गले के अंदर--

उस गेट के ऊपर लॉक लगा हुआ है।

ये कुछ लोहे की मशीनो से काम कर रही है बाहर की साइड कुछ धूल पड़ी है मिट्टी पड़ी है।

सर के ऊपर एक टोपी डाली हुई है सफेद कलर की हाथ में कुछ लिया हुआ खड़ा है नीचे जमीन पर कुछ कागज पड़े है।

और घर के बाहर बहुत सारी लाइटें जल रही है।

स्कूल के इधर उधर साइड में बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं स्कूल के जस्ट पीछे एक बहोत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

आरती को पिस्तौल बना हुआ है बाहर कुछ आदमी खड़े हैं आदमी के चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है।

इस फोटो में एक सड़क के ऊपर टैक्सी जा रही है मोटरसाइकल के ऊपर आदमी जा रहे हैं और --

और इस दरवाजे के ऊपर तरह तरह की पेंटिंग बनी हुई है डिजाइनिंग बनी हुई है कलर किया हुआ है।

यहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है पानी के चारों ओर हरियाली है छोटी छोटी घास ऊगी हुई है।

पेड़ उगे हुए हैं और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।